बहुत सारे हरे भरे पेड दिखाई दे रहे है और हमे नदी के ऊपर एक ब्रिज बना दिखाई दे रहा है।

और हमे यहा बहुत बड़ा ब्रिज दिखाई दे रहा है। और दूर ही हमे एक टावर दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे हरे भरे पेड दिखाई दे रहे है और हमे यहा एक पूल दिखाई दे रहा है।

और हमे यहा एक दूर पक्षी दिखाई दे रहा है जो थोड़ी जगह मे बैठा है और हमे नदी मे कुछ सूखे पेड दिखाई दे रहे है।

हमे यहा बोहोत बड़ा जंगल नजर आ रहा है। जो की बोहोत हरा भरा है। और हमे यहा बोहोत सारे घर नजर आ रहे है।

हमे कुछ कलर दिखाई दे रहा है और एक रेड कलर का कपड़ा दिखाई दे रहा है और हमे एक अंकल बहार बैठे हुवे दिखाई--